यह इस पर सिंबल बना हुआ है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा है कोन-सा सिम्बल बना हैं।

है जो देखने में रोमांचक लग रहे उसके ऊपर आसमान भी दिख रहा है वो सफ़ेद कलर का है एक नम्बर दिख रहा है।

चित्र मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पर अनेक प्रकार की डिज़ाइने बनी हुई है पत्थरे भी रही जो ये स्त्री और पुरुष भी थाड़े उआ बगल मा पेड़ भी लगा हुआ है उ--